कार के नीचे लिखा हुआ है बिग बोल्ड ब्यूटीफुल सामने बोर्ड है बोर्ड में क्या चीज़ चार्ज लगा हुआ है ।

आदमी खड़े हुए हैं सामने एक पेड़ है।

यहां पर बहुत सारे लड़की डांस कर रही है।

जहां पर बहुत सारे खिड़की--

यह एक जिम का दृश्य है।

बोरे हैं बेंच है।

दूल्हा बाबू का गद्दा रखा है ऊपर एक--

गाड़ी है गाड़ी का रंग व्हाइट है मोटरसाइकिल है।

आदमी तसला से ऊपर समान ले जा रहा है ईंटा रखा हुआ आगे घर है।

इसका रंग ब्लैक व्हाइट हैं।

सामने एक दो बोतल रखे हुए हैं।

ऊपर पोल में तारे गया हुआ है ।

यह एक जगह है जहां पर सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है।

यह एक झील का दृश्य है।

यहां पर पानी आ रहा है पत्थर से।